ये बहुत बड़ा पेड़ है सब लोग के सेल्फी खींच रहे है।

यहाँ पर एक ल एक आदमी है जो दुकान के दुकनदार हैं | यहां बहोत सारे सामान मिलते हैं | कॉफी मिलते हैं बिस्किट मिलते हैं --